खुला आसमान है। आसमान मे सफ़ेद अच्छे बादल हैं बोहोत बड़ा आसमान है नीचे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

शिप बहोत अच्छी दिख रही है। इसमें चार खिड़कियां हैं साइड में। सामने दो खिड़कियां हैं। बहोत सारे लोग बैठे --

और मस्ती कर रहे हैं और एक लड़की पिंक कलर का बस्ता पहन के बैठी हुई है। एक कुर्सी रखी हुई है सामने और उसके बगल मे डिस्प्ले बोर्ड रखा गया है जिसको बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं एक व्हाइट कलर का बोर्ड है।

यहाँ पर एक भैस है और एक भैस का बछड़ा है बछड़ा सामने देख रहा है और इन दोनों को ही रस्सियों से बाँधा हुआ है।

यह एक रोड है जिस में बोहोत सारी ऑटोस इधर से उधर जा रही हैं एक आ रही है कुछ जा रही हैं।

बोहोत सारे भगवान की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं और एक माला टंगी हुई है स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन थोड़ी पुरानी है एक लड़का खड़ा है जो कि बिल्डिंग की फोटो खीं च रहा है सामने बोहोत बढ़ियाँ -बढ़ियाँ लंबे-लंबे पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ एक घर है जो कि अभी नया- नया बना हुआ है। घर में बोहोत सारे छेद हो रखे हैं एक बोहोत बड़ा सा गेट है। गेट नीले --